यह एक ज़ू की तस्वीर है। यहा पर दो पैरोट दिख रहे है। जो की एक दूजे के सामने बैठे है।

यह एक नदी है जो की बहुत खराब दिख रही हैं और उसके ऊपर मे एक बड़ा सा पुल हैं जो की दो रास्ते को जोड़ रहा हैं।

यह एक डैम की तस्वीर है यहा पर एक नदी है और पीछे मे बड़ा-सा डैम है।

यह एक किताब और स्टेशनरी की दुकान है यहा पर बहुत सारी किताबे दिख रही है और दो आदमी सेल्फी निकाल रहे है।